एक व्यक्ति है जो वाइट कलर का हाथ में बैंडेज बांधे हुए हैं।

एक व्यक्ति सफेद रंग का कुर्ता पजामा में खड़ा है।

तीन चार बच्चे उसमें फिसल रहे हैं कुछ महिलाएं आगे पीछे चल रही हैं।

एक लंबा सा बहोत सारा वृक्ष है एक पीछे बिल्डिंग है।

यहां पे शेड के नीचे बहोत सारे बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

बाहर में मेज कुर्सियां लगी हुई है।

तीन चार भगवान की मूर्तियां हैं।

ईम चार चौंकियां रखी हुई हैं।

यह दृश्य एक रात का दृश्य है यहां पे--

पानी का फवारा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा खंभा है जिसमें कि तार लपेटे हुए हैं और हरे रंग की लाइटें जल रही है।

तीन प्लेट रखे हुए हैं जो की सफेद रंग के हैं।

इसमें चेयर लो लगे हैं वो ब्राउन कलर के हैं।

यह एक धार्मिक स्थल का चित्र नजर आ रहा है।

ये दो पूल का तस्वीर नजर आ रहा है।

दो पुल में दोनों साइड पुल है। बीच में पानी थोड़ी पानी नजर आ रही है।

पुल की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है।